का पोस्टर नजर आ रहा है और इसके शॉप भी नजर आ रही है यहाँ पर कुछ रेड और ब्लू कलर्स का पोस्टर है।

और बहुत सारे कार्टूनस और टूल नजर आ रहे हैं।

बॉयज और गर्ल्स हैं उसके अलावा यहाँ पर एल_ ई_ डी है विंडो है कबर्ड है बैग्स हैं।

इस पिक्चर में एक्सरसाइज के सामान नजर आ रहें हैं ब्लैक कलर के यहाँ पर--

लाइट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे नजर आ रहे हैं।

कोको कोला नजर आ रहे हैं और केक है यहाँ पर स्वीट्स भी नजर आ रही है ये लेडी है।

ये काउ का फॉर्म नजर आ रहा है यहाँ पर एक--

वहां एक स्टूडंट्स हैं और उनके टीचर उनको गाइड कर रहे हैं।

वॉल फ्रेम नजर आ रही हैं ब्लैक एंड रेड कलर के रेड दो चेयर्स हैं एक टेबल है।

इस पिक्चर मे बहोत सारे क्लॉथ नज़र आ रहे है ये क्लॉथ सेंटर है यहां पर लाइट्स है फैन्स है और--

ईस्काई ब्लू पोस्टर लगा नजर आ रहा है।

अ कुछ पिंक कुछ स्काई ब्लू कलर्स के ड्रेसेस में नजर आ रहे हैं।

ग्राहक को सामान बताते हुए नजर आ रहा है पेन पेंसिल वगैरह दिखाई दे रही है।

गर्ल्स व्हाईट और ब्लू ब्लू डार्क ब्लू और ब्लू और पिंक कलर के ड्रेसेस में हैं।

लात नजर आ रहे है यहां पर फोन पे और गूगल पे का स्नैप भी नजर आ रहा है।

पिक्चर में सुविधा मॉल नजर आ रहा है यहां पर कुछ लेडीज एंड जेंट्स क्लॉथ नजर आ रहे है स्टेच्यू में--

येलो और ब्लैक ड्रेस में है तो कुछ बच्चे रेड और ब्ल्यू ड्रेस में नजर आ रहे हैं बच्चे जंपिंग और--

व्हाईट पिंक ड्रेस में है और रेड टोपी पहने हुए हैं पिक्चर में।

इस पिक्चर में बिल्डिंग की शॉप नजर आ रही है।

वो डिपो दिल्ली इस तरीके के कुछ पोस्ट ब्लू रेड येलो --

ये पिक्चर किसी पार्ट की है ग्रीन कलर की चेयर और ब--

इस पिक्चर में सप्रा कलेक्शन एंड --

पिक्चर में बुक शॉप नजर आ रही है बुक शॉप का शटर ग्रीन है।

व्हाईट कलर की बाइक और एक जेंट्स --

इधर आ रही है इसका फोस्टर है और कस्टमर्स लेडीज एंड जेंट्स स्टेशनरी से--

का पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर फोर व्हीलर और जेंट्स चलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में पेट्रोल पंप नजर आ रहा है पेट्रोलपंप --